और वाइट कलर की चादर बिछी हुई है।

व्हाइट कलर के दो पिलो रखे है एक स्लेटी कलर का पिलो रखा हुआ है।

और कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे है और एक गाड़ी का कांच है जिसमें एक लेडिस दिख रही है उसका हाथ दिखाई दे रहे है।

ये रोड के सामने तीन-चार दुकाने दिख रही है हमें--

दुकान के पास में एक जेंट्स खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक दुकान पर चिल्ड्रन बुक्स लिखा हुआ है उसके पास में एक और दुकान दिखाई दे रही है।

सामान टंगा हुए है दुकान के शोकेस में सामान रखा --

डांस करते हुए दिखाई रही है सुंदर -सी ड्रेस पहने हुए --

इसमें कबीरधाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये नदी दिख रही है नदी के-

ये एक हाथ में नेस्कैफे का कप रखा हुआ है।

ये बाहर हमें केनरा बैंक दिख रहा है।

बन रही है और एक बड़ी सी एक छत है ये --

एक गेट दिखाई दे रहा है खिड़की दिख रही है साइड में ये--

ये मैगी के सॉस के--

और ये एक फुंदे से रस्सी से बंधा हुआ है ये --

दीवार में शोकैस लगा है उस पर ये कांच के अंदर --

और ये पथरीला एरिया है दिखाई दे रहा है पत्थर --